येह तस्वीर किसी कंपनी की तस्वीर है।

यह एक घूमने फिरने की जगह है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे तथा पत्थर है।

यह तस्वीर घर के एक कमरे की--

यहे एक लाल रंग की बिल्डिंग है।

आस पास मे बहोत ही शांतिपूर्वक की जगह है।

और इनको अच्छे ढंग से एक जगह समान को शिफ्ट किया सक जाता है।

और यहां एक बेड भी डला हुआ है जो कि--

और यहां इसके आसपास में भी लगे हुए हैं।

यह एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है यहां पर अलग अलग अन्य प्रकार के--

यह एक रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही सुंदर है।

जहां पर बच्चे अलग अलग तरह के नए नए कपड़े पहनते हुए--

बैठ कर देखते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह एक बहुत बड़ा रूम है जहां पर अन्य अन्य प्रकार से--

सही तरीके और ढंग से व्यवस्थित किया हुआ है।

जहाँ पर लोग अपनी अपनी एक्सरसाइज --

यहां अन्य अन्य प्रकार के मशीने हैं।